यह फोटो --

बड़ा दुकान लग रहा है ये शादी साड़ी का शोरूम का है लगता है इसमें बहुत सारी साड़ियां है रखी हुई बहुत रंग बिरंगी साड़ी है ये साड़ी डिश टी.वी. में लगा हुआ है और उसपे लिखा हुआ है फोटो --